इसके आने जाने के लिए सीढी बनाया गया है दोनों साइड से घेरा गया है।

और पीछे साइड कार स्टैन है जो कार सब भी लगा गया है और ये एक सुबह का टाइम है।